लिखा हुआ है नीचे बहुत सारे गमले हैं लाल रंग के गमले हैं हरे हरे पौधे लगे हुए--

बहुत ही सुंदर नजारा है एक बिल्डिंग भी दिख रही है बड़ी सी।

इस तस्वीर में जो फोटो है यह एक बिल्डिंग कंपलेक्स की है।

लाइट लगे हुए है लाल रंग का दिवाल है।

एक झरना भी बेह रहा है उसका पानी बहुत साफ है।

एक ने ऑरेंज कलर की शर्ट पहनी है एक ने पीले रंग की शर्ट पहनी है लाल रंग की शर्ट पहनी हैं।

इस तस्वीर में जो फोटो है यह एक स्टेशन की है।

तस्वीर में जो फोटो है यह एक मार्केट की है।

छोटी सी बिल्डिंग है जिसका सफेद रंग का कलर है।

एक लड़की नीले नीले रंग की जींस पेहनी हुई--

एक पीले रंग का फुग्गा है एक सफेद रंग का है एक नीले रंग का है एक पंखा भी लगा हुआ हैं।